कुछ रखे हुए है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है ।

ये लाइट भी जलती दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहुत सारी पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं उनकी दीवाल --

यहाँ पे बहुत सारी हिरणे भी दिखाई दे रही हैं जो की घास चरते हुई दिखाई दे रही है नीचे घास भी उगी हुई है |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

और कुछ फूल भी लगे हुए है जिनका कलर रेड है और कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए है।

ये दो ए.सी. लगी हुई दिखाई दे रही है और लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है. यहाँ पे कुछ पोस्टर वगेरा भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये मोमबत्ती रखी हुई है और नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट भी बिछा हुआ --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

एक बैंच भी रखी हुई दिखाई दे रही है और एक कचड़ा पेटी भी ।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

यहाँ पे एक गुफा दिखाई दे रही है कुछ न कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन्होने व्हाइट गोल्डन और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए --

एक खिड़की दिखाई दे रही है और एक रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही है जिसका कलर --

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है इसकी दीवाल का कलर व्हाइट और ग्रीन है ।

नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है ।